यह स्टेज बना हुआ है।

बहुत सारे अलमारी बना हुआ है।

दुकान में बहुत सारे कपड़े हैं।

यहां पे आदमी भी है एक बोतल भी रखा हुआ है।

समुद्र में बहुत बड़ा नाव है।

और इसमें कुछ प्लास्टिक का सामान है।

के आसपास आदमी भी है।

नारियल का पेड़ है कुछ फूल का है और बाहर में फोरविलर लगा हुआ है।

यहां पे गुब्बारा भी लगा हुआ है।

यह एक डाक घर है।

पास एक रूम है रूम के अंदर बहुत सारे आदमी हैं।

इसमें लाइट भी लगा हुआ है इसमें पंखा भी है।